इस तस्वीर में हम हमें कुछ डीजे और सजावट नजर आ रही है और --

यह तस्वीर भारतीय टेट बैंक का है | जहाँ पे कुछ दीवारे नजर आ रही हैं।

यह तस्वीर आपूर्ति विभाग का है।

के में कुछ दिल नज़र आ रहा है।